ये यहाँ पे-ए- ए- ए पूल बना हुआ है जिसका रंग काला है लोहे का बना हुआ है ऊपर से आदमी जा रहे है एक लेडिस एक आदमी उसका रंग हरा और कपड़े का रंग सफ़ेद है।

रोड के उस पार एक बुक की दुकान खुली हुई है जिसका रंग लाल है ऊपर दो मंजिल घर बना हुआ है जिसका रंग सफ़ेद है।

कपड़ों की दुकान है जिसके पोस्टर का रंग लाल है और शटर लगी हुई है उसका रंग हरा है और ऊपर वाली मंजिल मे तार लगी हुई है जिसका रंग काला है।

जिसका रंग पीला है और पेड़ दिख रहे है बड़े-बड़े जिनका रंग हरा है आपके बगल से एक पट्टी लगी हुई है पत्थरों की जिसका रंग --

और मैं अपनी पूजा को हगा खिला रहा हूँ और बस ब खड़ी हुई है जहाँ पे टायर का रंग काला है और मेरी पूजा बोल रही है जल्दी-जल्दी मेरे को हगा खिला दो मेरे को भूख लगी है।